एक फिसलपट्टी दिखाई दे रही है जो कि नीले कलर की नारंगी कलर की लाल और --

पीछे एक नाव जैसी दिखाई दे रही है जिसपे कुछ लोग भी हैं | कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हैं | दूर सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है | आसमान भी नजर आ रहा है।

पीछे कुछ पैकेट दिखाई दे रहे हैं लाल नील पीले हरे इत्यादि कलर के | बकेट दिखाई दे रही है।

सामने एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहाँ पे पादरी जी खड़े हुए है और फ़ोटो दिखाई दे रही है क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने ब्लू कलर की जैकेट पहनी है अंदर टी-शर्ट पहनी है और ब्लू पेंट पहना है और जूते पहने है।

लाइटनिंग भी बहुत सारी दिखाई दे रही है।